यहाँ पे ये दुकान दिखाई दे रही है जिसके दीवार का कलर ग्रीन है और यहाँ पे शटर भी लगी हुई दिखाइ --

यहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है वहाँ पे दिखाई दे रही है यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोहे का गेट भी लगा हुआ है ।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार का कलर व्हाइट है इसमें एक फैन भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही --

इ बना हुआ दिखाई दे रहा है उस पे दीवाल दिखाई दे रहे है उसका कलर ग्रीन है यहाँ पे कोई चिड़ियाँ टाइप की भी --

यहाँ पे ये बिल्डिंग दिखाइ दे रही है जिसको दीवाल का कलर वाइट है और यहाँ पर काँच भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कार खड़ी हुई है जिसका --

यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसके दिवार का कलर व्हाइट है और नीचे घास-उस भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ खम्बे वगेरा भी लगे हुए है बिजली --

पोस्टर वगैरा भी लगी हुई दिखाई यहाँ पे लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे खम्बे भी --

अँधेरा है यहॉं पे यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमान में दिखाई दे रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रही है ।